फास्ट फूड का दोकान है।

जो एक ठेला लगा हुआ है ठेले में एक लड़का है जो कुछ चायनीज बना रहा है।

एक सॉस का बोटल है एक किसान जमस है।

बहुत ही खुबसूरत बॉडी बना लिया इसने।

इधर देख सकते हो इधर एक बुक का दुकान है जो बुक का शॉप होता है वो शॉप है।

क्रीम है उसकी मिनी बैग है। एक कांची है।

दो तरफ बैंक भी है बैंक --

खुद के एक कार है जो चार कार होते --

इधर देख सकते है एक बजाज शोरूम है शोरूम के शोरूम के अंदर बहुत सारा --